ये एक बॉक्स पे है एक आइसक्रीम का कोन्स लगा हुआ है वो भी रेड कलर में बैलून है टी_वी पे डिस्प्ले हो रहा है तरह तरह के जूस का--

ये एक घर है घर की है यहाँ बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है और ऊपर ब्राउन कलर की जाल है।

यहाँ एक दुकान हैं शाम ए खास और यहाँ एक अ रेस्टोरेंट हैं शाम ए खास और --

ये यहाँ तरहा तरहा के पीपोट शोपीस रखा हुआ है।

और यहाँ पे अ डिग्री भी है बुक बुक शेल्फ रखे हुए है अ और ब्लैक कलर की चेयर है।

और अं ब्लू कलर पेंट लगा हुआ है और ब्राउन कलर चार लगा हुआ है।

कोई कपड़ा रखा हुआ है और स्काई ब्लू कलर भी है ऊपर सीलिंग डाली हुई है और एक शेल्फ है।

नीला कलर के डोर है और दो लोग खडे हुए है वाइट कलर के अअ शर्ट पहने हुए और एक हेल हेलमेट हाथ में है।

ये एक मॉल है उपर डाला हुआ है वाइट ट्यूबलाइट लगा हुआ है बाजु बाजु और--

ये एक बकरी का बच्चा है जो इंसान की तरह बेठा हुआ है ये ब्राउन और वाइट कलर का--

लिखा हुआ है और ब्लू कलर बटन येल्लो कलर बटन और रेड कलर बटन है।

हरयाना पुलिस अकेडमी की एक अः पुलिस अः ये एक ऑफिस है और यहाँ पर वाइट कलर का एंट्रेंस है।

और वाइट कलर पर हें और ब्लैक कलर --

और यहां पर अं क्यू_आर कोड का तीन बैनर लगा हुआ है और यहां बर्गर मिलता है टेबल फैन लगे हुए हैं।

और लाइट सजा हुआ है और बेल की पत्ते लगे हुए हैं।

यहां सिल्वर की दुकान है यहां पर सिल्वर स्टैंड है दिये की इसपे एक पे मोर लगा हुआ है दूसरे पर--

और उसपर पत्ते लगे हुए है और इसके सामने न्यूज़ पेपर पड़ा हुआ है और पीछे छोटासा तालाब है और उसपे झाड़ू लगा है।

और टेबल फैन लगा हुआ है और एक ट्रॉली है ट्रॉली पर अं हैंड वाश और --

और इधर उधर बुक्के भी लगे हुए हैं रेड और येलो कलर की--

खूब सूरत तरासा है ये एक वुडेन कलर की है।

रेड और येलो की और बनाना की ट्री भी लगे हुए है और--